दो मेला है बहुत सारे खिलौने हैं बहुत सारे आदमी हैं और बहुत दुकान है और एक पेड़ है।

बहुत सारे घर हैं।